इस तस्वीर में आप देख सकते हैं आपको एक अ आदमी झाड़ू देता नज़र आ रहा है।

इस आदमी ने ब्लू रंग की टी-शर्ट पहने हुई है और अपने हाथ में एक झाड़ू ली हुई है।